अह खड़े हुए अपना काम कर रहे हैं ।

कुछ लोग चलते फिरते और नजर आ रहे हैं।

मुझे इस चित्र में एक ब्रिज नजर आ रही हैं ।

बहती हुई नजर आ रही हैं ।

बोटिनिकल गार्डन --

ग्रीन गेट नजर आ रहा हैं गेट पर वाचमैन खड़ा हुआ दिख रहा नजर आ रहा हैं और कुछ लोग आ जा --

नजर आ रहे हैं और कुछ पेड़-पौधे भी--

और कुछ लोग चलते फिरते हुए नजर--

मिस्त्री काम करता हुआ नजर आ रहा हैं और कुछ ईंट और मोरंग --

मुझे इस चित्र में एक लोकल ट्रेन जाते हुए नजर आ रही हैं ।

जंगल नजर आ रहा हैं ।

जंगल के अंदर एक --

मुझे इस चित्र में एक गार्डन नजर आ रहा हैं गार्डन में --

और आसपास कुछ गाड़ियाँ भी नजर आ रही हैं ।

एक पार्किंग नजर आ रहा हैं पार्किंग में कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं ।

बॉम्बे कॉफ़ी हाउस --

घर नजर आ रहा हैं और उसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे --

स्पोर्ट्स क्लब नजर आ रही हैं और क्लब में बहुत सारी लाइटें नजर आ रही --